त्र में एक खाली रुम दिखा रहा है जिसमें एक खाली बेड पड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं बनाया है।

आस पास बहुत सारे पेड़ दिखाई मिल रहा है मुझे।

मुझे एक मंदिर भी दिखाई मिल रहा है जिसके सामने एक झंडा भी दिख--

कोई दूर से फोटो खींच रहा है।

चित्र में दो चेयर दिखाई मिल रहा है जो है एक काला और एक ब्लैक कलर का कुर्सी।

चित्र में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई मिल रहा है।

इसके आगे एक झंडा गाड़ा हुआ है।

दुकान का अंदर एक स्टूल दिखाई मिल रहा है।

इधर पे एक सफेद सीलिंग दिख रहा है।

एक बिस्तर दिखाई मिल रहा है दो पिंक पिलो दिखाई मिल रहा है।

आस पास में बहोत ज्यादा पेड़ दिखाई मिल रहा है मुझे।

देख के लगता है ये एक क्लीनिक स्टोर है।

चित्र को देखकर लग रहा है ज्यादा तरह का बेस स्क्वायर शेप जो है राउंड शेप से चेंडा किया गया है।

मुझे बहुत सारे इंसान भी नजर आ रहा है।

आस पास बहोत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों भी दिखाई मिल रहा है मुझे।

चित्रों में मुझे एक स्कॉर्पियो कार भी दिखाई मिल रहा है मुझे।

चित्र में एक नदी दिखाई मिल रहा है।

दो ठो पिकअप जो ब्लू कलर का तिलपन से ढका हुआ दिखाई मिल रहा है मुझे।

पोस्टर में अमूल और पिज़्ज़ा दिखाई मिल रहा है मुझे।

बहुत सारे बैलून भी दिखाएं मिल रहा है मुझे।